कई माल रेक के नीचे कार्टून में रखा हुआ दिख रहा है।

सामने कुछ बाइक्स खड़ी हुई हैं।

कहीं पे धूप तो कहीं पे छांव पड़ रही है।

तीन सुनहरे रंग की झूमर झूल रही है।

बीच में एक चरकूना बैरीकेट जैसा बना हुआ है।

वॉल में टी पैलेस मेन्यू बोर्ड लगा है।

ओवन फ्रिज मिक्सर ग्राइंडर और कांच की गिलासें नजर आ रही हैं।

ऊपर तरफ बड़ी पेड़ो में इलेक्ट्रिक तारे सटी हुई हैं।

साइड में टॉली बैग नजर आ रहा है।

भीतर में अनेक लाइट्स जल रही हैं।

सामने रेड कारपेट पर एक लड़का नज़र आ रहा है।

कई पेड़ भी नजर आ रहे हैं।

सड़क पर बहोत सारे लोग जाते नजर आ रहे हैं।

कार्यालय के भीतर एक महिला और पुरुष बैठे हुए हैं।

दो बाइक खड़ी है एक व्यक्ति तीसरी बाइक के सामने खड़ा है।

कोई बसें खड़ी हुई है बस में एक बैलून ह लगा है।

साइकिल चलाते एक व्यक्ति नजर आ रहा है।

बहुत रंग बिरंगे स्वेटर्स मॉल में टंगी हुई हैं।

कई प्रकार के पौधे नजर आ रहे हैं।

यह पीले रंग की लकड़ी की रैक है बीच के फंदे में बैडमिंटन और शटलकॉक के डिब्बे हैं।

यह एक घना जंगल का चित्र लग रहा है।

बाईं तरफ कार का आधा हिसा भी नजर आ रहा है।

एक लड़का खड़ा हुआ है।

होटल के साइड में मारुति सुजुकी ऑथराइज्ड सर्विस का शॉप लग रहा है।